एक फील्ड है उसमें एरोप्लेन खड़े है। एक रेड कलर की बस है और स ग्रील लगे हुए है शीशे।

बहुत सारे आदमी बैठे हुए हैं कोई चश्मा लग रहा है कोई माक्स लग रहा है किसी का बैग टंग रखा है।

एक दुकान है उसमें वो रखे हुए हैं गाटर रखे हुए हैं।

ये खुला आसमान है वहां पे एक फ्लैट बना हुआ है वहां पे ब्लैक --

एक रूम है इसमें बहोत सारे पेड़ पौधे भी हैं प्लास्टिक के।

सीढ़ी भी रखी हुई है कुछ कुछ मेज रखी हुई है ब्लैक --

एक रूम है उसमें बच्चे बैठे हुए हैं रेड कलर के चेयर पे पीछे बैग पे--

हो रहा है कुछ टीन पड़ी हुई है वाइट कलर का पेंट हो रहा है लाइट जल रही है नीचे टाइल बिछे हुए हैं बच्चे ट्यूशन पढ़ रहे हैं।

ट्रैक्टर भी खड़ा हुआ है उसमें कुछ रखा है येलो कलर का ग्रीन कलर का पाइप टायर भी है ब्लू कलर का कुछ--